इस चित्र में हम देख सकते हैं एक स्टेडियम के चित्र है यहां पर बीच मैदान में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

बालों से संबंधित हो चाहे वो त्वचा से संबंधित हो पेट से संबंधित किसी भी रोग से संबंधित दवाइयां--

ती चारो तरफ पेड़ों की घेराबंदी की गई है और बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है जो गेट का कलर भी ग्रीन कलर के कलर से रंगा गया है।

हम जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये मोबाइल शॉप की दुकान है यहां पर आप को वोडाफोन और एयरटेल फोर जी के भी--